जिसको ऊपर से ढका गया है।

इस तस्वीर में दो टेबल टेनिस दिखाई गई है।

एक गुब्बारा नीचे भी पड़ा हुआ है।

यह तस्वीर एक विद्यालय की है।

यह विद्यालय नैतिक बौद्धिक शारिरिक और समाज विकास पर जोर देता है।

पहिया और चारपहिया वाहन खड़े हुए हैं।

इस पर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पास में ही उसका बछड़ा भी बंधा हुआ है।

पीछे एक ऑटो खड़ा हुआ है।

बिजली के तार और खंभे दिखाई दे रहें हैं।

कुर्सी के नीचे पानी भरा हुआ दिखाया गया है।

कुछ टोकरियां भी रखी हुई हैं।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

इसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति ने कंबल ओढ़ रखा है लाइटें भी जल रही हैं।

इस तस्वीर में दो व्यक्ति बोरी लेकर जा रहे है।

एक व्यक्ति टॉली के अंदर खड़ा हुआ है।

एक स्टैचू ने कुर्ती पहन रखी है।

एक गमले में पौधा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ पौधे गमले मे लगे हुए हैं।

जिसने हाथ में पर्स पकड़ रखा है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

और वहां पर जिम की मशीनें भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसपर बहुत सारे पेड़ पौधे और घास लगी हुई है।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

कुछ व्यक्ति आते और जाते दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जीस पर कुछ लिखा हुआ भी है।

घास से ऊंट बनाए गए हैं।

एक चार पहिया वाहन टूटी हुई खड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है।